जो पहाड़ ऊंचाई पर है साथ में साइड में पेड़ पौधे तथा पहाड़ ऊपर से सुखा दिखाई दे रहा है ऐसे लग रहा है जैसे लैंडस्लाइड हो रखी हो।

ये बर्ड दिखाई पड़ रही है। जो इवनिंग के समय में ली हुई पिक्चर है।